फिसक रही हैं ये देखिये काफी एन्जॉय कर रहै है।

हेलो दोस्तों जैसा की आप दिख सकते है ये जो नज़र आ रही है जो की बस स्टैंड की तस्वीर लग रही ये देखिए यहाँ पर बस वगेरा खड़ी हुई है ऑटो वगेरा खड़ी हुए है।

हेलो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे देख सकते है ये जो आपको दिख रही है जो तस्वीर है जो की मॉल की तस्वीर है यहाँ पे देखिये काफी सारे --

हेलो दोस्तों आप देख सकते है यहाँ पे ये मछली बाजार है यहाँ पे ये देखिये यहाँ पे मछली बिकती है।

यहाँ पे ये मिट्टी में आग लग गयी है यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे ये मिट्टी में आग लग गयी है यहाँ से लोहे व्यक्ति यहाँ से भाग रहे है।

और ये मोर जो है जो की सड़क पे खड़ा हुआ है और आइड साइड में आप देख सकते है जो यहाँ काफी बड़े अच्छे सुंदर- सुंदर पेड़ लगे हुए है ये देखिये जो पेड़ भी काफी सुंदर है।

और की आप देख सकते है मक मकान के आउट साइड आप देख सकते है काफी पेड़ लगे हुए है जो पेड़ है जो काफी हरे - भरे बड़े पेड़ है।